जिसके अंदर बहोत सारे दवाई रखे हुए हैं टेबल पर और उसमें रंग बिरंगे डब्बा भी रखा हुआ है ऊपर मछली का जार रखा हुआ है बाहर में शटर लगाया हुआ है बहुत सारे लाइटे जल रही है अंदर में पंखा चल रहा है।

गेट लगाया हुआ है उसमें एक शीशा है बाहर में बड़ा सा ग्रिल लगाया है वो भी ग्रीन कलर का --

जिसके अंदर बहोत सारे लोग है जो रेड कलर का कुर्ता पहने--

यहां पर एक घर का दृश्य देख रहा है घर के बाहर गेट लगाया हुआ है उसमें ग्रील लगाया हुआ है और गेट में परदा लगाया हुआ है रेड कलर का और उसके अंदर भी एक परदा लगाया हुआ है ब्राउन कलर का।

बहोत सारे इधर उधर पेड़ पौधे हैं छोटा छोटा फूल पौधा लगाया हुआ--

बाहर में एक पानी का जार रखा हुआ है वो भी ऑरेंज कलर का।

गेट लगाया हुआ है बगल में वाइट कलर का शटर दिख रहा है।

के हाथ में एक टैब है और ओ गंजी पेहना है ब्लू कलर का और ट्राउजर पेहना है ब्लैक कलर का--

जिसको वो ऑरेंज कलर के फूल से सजाया गया है बाहर शटर लगाया हुआ है ब्राऊन कलर का।

यहां पर चाय दुकान का दृश्य दिख रहा है।

एक बड़ा सा स्कूल का दृश्य दीख रहा है।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

अंदर में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे दुकानें है दुकान में बहुत सारा शटर लगाया हुआ है पर्पल कलर का अंदर बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं कोई टेबल पे बैठा हुआ है।

तारे इधर उधर गई हैं और गेट में पूरा शीशा लगाया हुआ है एक आदमी जो उसको देख रहा है वाइट कलर का शर्ट पहना है और नीचे ब्लू कलर का पेंट एक और आदमी बगल में खड़ा है।

उसे रस्सी से तान दिया गया है उपर चारों तरफ पूरा ईटा का दीवार बनाया हुआ है।

बाहर में एक जाली लगाया हुआ है और तीन बोड़ा रखा हुआ है बाहर में वाइट कलर का येलो कलर का बाहर में एक गेट है।

यहां पर एक ऑफिस का दृश्य दिख रहा है।

जिसके अंदर बहोत सारे लाइटें जल रही है पंखा चल रहा है और स्विच लगाया हुआ है अंदर में टेबल रखा हुआ है अंदर में और उसमें बहुत सारे रैक बनाए हुए हैं रैक मेंब बहोत सारे डब्बा रखे हुए हैं और नीचे जींस भी रखा हुआ है।